रेड है हल्का पलपल कलर है येलो है ऑरेंज है।

यह कपड़ा का दुकान है जो कि रेडीमेड कपड़ा दुकान है यहां पर बहुत सारे कपड़ा का वैरायटी है लाल ब्लू काला हरा नीला पिंक ।

क्या सिल्वर कलर से बना हुआ है जो कि यह नेपाल की है बौद्ध धर्म आगे बैठे हुए हैं और दो उसके पीछे है भगवान है।

यह एक अं बजरंगबली का मंदिल है और भोले बाबा का मंदिल है पन कुछ पंडित लोग हैं जो कि सामने बैठे हुए हैं कुछ माँ हैं।

दो बाइक एक साइकिल एक स्कूटी खड़ी हुई है बगल में अह आई_सी_आई बैंक के बगल में लेबोरेटरी है।

अ उसके चक्के दिख रहे हैं एक आदमी उसपे पुट्टी करवा रहा है जोकि एक्सीडेंट हुआ कार है।